कुछ व्यक्ति साइड में बाइक पर बैठे हुए हैं यहां पर कुछ बाइक भी खड़ी हुई है।

आ जिसने ब्लैक कलर की पैंट पेहनी हुई है और बगल में एक व्यक्ती होर है।

है और साइड में एक डस्टबिन रखा हुआ है ब्लू कलर का।

और ऊपर पत्थरो से बहुत सारा पानी पट रहा है।

यह एक जिम का दृश्य है।

और सामने व्हाइट कलर का बिजली का बोर्ड लग रहा है।

फुलवारी टाइप का लगा हुआ है।

सामने क्लासिक जिम लिखा हुआ है रेड कलर में।

और उसके नीचे का शटर डाउन है शटर का कलर सिल्वर है।

चित्र के सामने एक प्लेट में चार--

व्हाइट वे ब्लैक कलर की लाइन वाली शर्ट पहनी हुई है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

एक व्यक्ति और एक औरत बैठी हुई है।

खड़ी है सामने से चली आ रही है।

छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और सामने बहुत सारे।

इस गुब्बारों का कलर पीला भी है और साइड में कुछ लेडिस खड़ी हुई है।

कुर्सियों का कलर ब्लैक है।

और सामने एक रोशनी पड़ रही है।

सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

ब्लैक कलर का टम्पू खड़ा हुआ है।

और सामने एक खंभा है और खंबे के सामने एक स्कूल नजर आ रहा--

दो शटर लगे हुए हैं जिसमें से एक शटर खुला हुआ है।

सामने कुछ खिलौने रखे हुए हैं।

जिसमें से आधी आधी नजर आ रही है और साइड में कुछ मशीनें हैं।